यहा पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के सामने कुछ पेड़ लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं।

यहा पर एक गाड़ी खड़ी हुई है जो दिखाई दे रही है एक गेट लगा है जो दिख रहा है।

यहाँ पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं ।

जिस रे रेलिंग लगी है जो दिखाई दे रही है खिड़की दिख रही है दरवाजे दिखाई दे रहि है दरवाजे दिख रहे है।

एक नदी दिखाई दे रही है नदी मे एक बोट चल रही है एक मछली पकड़ने वाली मशीन दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में कुछ अ हरयाली लगी है जो दिखाई दे रही है यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहा पर एक सा नदी देखा समुद्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जिस पर कुछ पेड़ लगे हुए है जो दिख रहे है।

पेड़ दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ पत्थर दिखाई दे रहे है मम पत्थर दिख रहे है।

यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही है गाड़ी खड़ी हुई है कार खड़ी हुई है जो दिखाई दे रही है।

यहाँ पर दो पंखे रखे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर रॅकों मे कुछ सामान रखा हुआ है जो दिखाई दे रहा है ।